कस्टमर जहां पे दुकान पर आते है साइड इसके दुकान दिखाई दे रहे हैं ऑनर के।

पूल दिखाई दे रहे हैं अलग तरह के वृक्ष दिखाई दे रहे है जहां पर जहां पर शेड भी दिखाई दे रही है।

उसी के पीछे एक एल_इ_डी दिखाई दे रही है एक स्पीकर भी दिखाई दे रहा है र रेफ वाइन कलर की ब्लू कलर की दिखाई दे रही है।

ओ एक एक हमें कैंडी दिखाई दे रही है।

जातरी घूम रहीं हैं कुछ इनमें से आदमी है कुछ इनमें से थोड़ी सी औरते है और उसी के सामने एक बादल छाया हुआ है उसी के बस के नजदीकी एक--

हमें जहां पर एक लकी शू सेंटर का एक कपड़ों का शोरुम दिखाई दे रहा है जिसी के बाहर एक जहां पर शटर बंद हुआ पड़ा है उसी के साथ एक एक्टिवा लगी हुई है।

जे एक एक्टिवा का शोरूम है जहां पर अलग अलग तरह की एक्टिवा दिखाई दे रही है जैसे कि ब्ल्यू कलर की वुडन कलर की वाइट कलर की एक्स्ट्रा --

किसी केंद्र में एक काउंटर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कैलकुलेटर रख रखा हुआ है उसी के पास पेंट पड़ा हुआ है।

हमें यहां पर एक बिल्डिंग दिखाई दे री हैं जिसके अंदर एक पार्क बन हुआ हैं।

इस पार्किंग के अंदर हमे हरे पत्तों से भरे हुए पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

वो इस रुम के अन्दर हमें ब्लैक कलर्स की कुछ चेहरे दिखाई दे रही है।

साफ सुथरा दृश्य इसमें सभी दिखाई दे रहा है।

ब्राउन कलर की दो चेयरे दिखाई दे रही है एक टेबल दिखाई दे रहा व रेड कलर का काउंटर दिखाई दे रहा --

हमें सामने एक दुकान दिखाई दे री है जो जो दुकान है स्टेशनरी की दुकान है।

विंडो ए_सी के पास सामने एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक रूम नजर आ रहा है जिस रूम में एक एल_इ_डी लगी हुई है। एल_ई_डी के नीचे एक रिमोट लगा हुआ है।

इस तस्वीर में हम एक मोबाइल की शॉप नजर आ रही है जिसके अंदर अलग अलग तरह के मोबाइल्स लगे हुए हैं इसी के अंदर हमें तो काउंटर शुरू हो--